यह होटल है होटल के अंदर सोफा लगा हुआ है कुर्सी लगा हुआ है कि--

अं सीढ़ी है पोस्टर लगा है उधर टावर है टावर के घड़ी में बज रहा है बारह बज के नौ मिनट ।

ट्रेन है ट्रेन के बगल में पेड़ पौधा सब है ट्रेन के अंदर छह सात को आदमी बैठाला है।

ये कपड़ा सका दुकान है टोपी पेहेने है लड़का जुत्ता हाथ में लेले है वाइट कलर का शर्ट पेहने है वाइट कलर का टोपी है उसपे बॉय लिखा हुआ है।

इधर अ क साड़ी है ब्लू कलर का पिंक कलर का व्हाईट कलर का टी-शर्ट टी-शर्ट सब भी है।

यह जोगिंग करने वाला है एक वाइट कलर का है ये व्हाइट कलर का खिरकी है दीवाल है।

इधर ये घर है निम्म्म बास का पेड़ है जंगल झाड़ सब है आदमी यह पोल खड़ा हुआ है।

पत्थल है हरा कलर का जंगल सब है पीला कलल का पौधा है चिड़िया है पत्थल बहुत सारा रखाया हुआ है।

ये घर है घर के अंदर पंखा है टाइल्स लगा हुआ है दीवाल है पिंक कलर का।

और वो आदमी खड़ा हुआ है थो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इधर बैठने वाला सब कुर्सी है।

यह मोबाइल का दुकान है मोबाइल मोबाइल सब है चार्जर सब है एयर बोर्ड है।

इसमें कुंट है कुंट जो है वो लाल कलर का व्हाइट कलर का लाल कलर का पिंक कलर का ब्लू कलर का।

फूल है देवाल है देवाल हरे कलर का है पिंक कलर का है लाल कलर का है व्हाइट कल--

चार मंजिला बिल्डिंग है उधर हरा-हरा पेड़ सब भी है सि सीड़ी भी है सीड़ी के ऊपर जंगल-झाड़ सब भी है।

कुछ चीज का दुकान है इसमें बैठने वाला है ये लाल कलर का पेंट है काला कलर का पेंट है आदमी है।

सीढ़ी है यह गेट है खिड़की है उधर भी गाड़ी लगा हुआ हैं पेड़ पौधा भी है।

पे पें पेंट है गिलास है कुर्सी है पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर व्हाईट कलर का बनाया हुआ है।

इधर भी एक दीवाल है रोड के नी साइड में दीवाल है गाड़ी भी है गाड़ी गाड़ी व्हाइट कलर का आदमी व्हाइट कलर का--

पेट्रोल पंप हैं पेट्रोल पंप पर गारी है पेट्रोल पंप है।

ये पेट्रोल पंप है पेट्रोल आता है आगे पेट्रोल का गाड़ी भी लगा हुआ है इधर पेट्रोल का औ--

पेड़ पौधा सभी है उधर उधर से अ बादल है इधर जंगल झाड़ सभी उधर चर मिंजला घर है इधर पेर पौधा सब है छोटा-छोटा।

ये जाली है जाली में मछरी सब है मछरी बहुत तरह का है जंगल झाड़ सब है पानी है।

इधर बगल में दुकान सब है गाड़ी सब है इ बालू है मिट्टी है ईंटा है साइकिल लगा हुआ बांस रखा हुआ --

दीवाल ब्लू कलर के रंग आया हुआ है टेंथ सिक्स टू टेंथ ऑल सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ाया जाता है इधर कुछ--